इस इमेज मे हमे एक राधा कृष्ण की मूर्ति दिखाई दे रही है। जो दोनों बंसी को पकड़े हुए है और दोनों --

यहा के हम्म भी लगा हुया है व्हाइट कलर का और हमे दोन्हों साइड हरियाली दिखाई दे रही छोटी-छोटी घास दिखाई दे रही है।